और आईने भी नजर आ रही है। मेज भी रखा हुआ है।

और आसमान भी नजर आ रहा है और बैनर भी दिख रहा है।